इस पेट्रोल पंप में एक टैंकर खडी है जो पेट्रोल ले के आइ हुई है यहाँ इस पेट्रोल पंप में बहुत सारी बाइक खडी है जो पेट्रोल लेने के लिए खडी है ।

यहाँ बहुत सारा पाइप बिछाया गया है यह पानी फिल्टर बहुत ही बड़े प्लांट ह --

पुतले में कपड़े पहनाए गए हैं यह देखने में बहुत अच्छे लग --

यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है। शादी विवाह का कार्यक्रम लगता है। एक स्टेज बनाया गया है जिसमें एक सोफा रखे हुए हैं। नि बगल में काफी टेबुल कुर्सी लगा हुआ है।

यह सरकारी कॉलेज है यह कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज है यह लखीसराय में है यह कॉलेज बहुत बड़े है।